चित्र में हमें इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई गई है जिसका नाम सैमसंग --

और एक एक्टिवा है एक बाइक है।

और ग्रिल के पास एक आदमी और एक और औरत खड़े हुए हैं।

उसके चारों तरफ कुछ कुर्सियां रखी हुई है जो रंग बिरंगी है।

लोहे से कुछ डिजाइन बनाया गया है।

फूल और पत्तियां और बगीचे दिखाए गए हैं।

जिन सबके अंदर लुमिनेंस के बैटरी रखे हुए हैं। एक मेज ल रख --